और इसके पास में बहोत सारे एडवरटीजमेंट होर्डिंग लगा हुआ है पास में ये घर है जो की पेंट नहीं किया हुआ है।